यह एक रोड है इस रोड पर एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ लिखा हुआ है।

मिठाई की दुकान में काउंटर में बहुत सारी मिठाई काउंटर के ऊपर नमकीन के डब्बे रखे हुए हैं।

यह एक स्कूल है इस स्कूल में ग्राउंड में कुछ व्यक्ति कतारबंदी लाइन से ड्रेस में खड़े हुए हैं।

यह एक बहुत ही सुंदर शोरूम हैं।

यह स्टोर है इस स्टोर के अंदर बहुत सारे फिटिंग हुई है।

इस मंदिर में लाइटें लगी हुई है।

इस क्रिकेट ग्राउंड में कुछ व्यक्ति बैठे हैं।

यह एक चर्च है। इस चर्च के बाहर गुब्बारें लगे हुए हैं।

यह एक कार की एजेंसी है।

यहां पर टेंट से भी मंदिर को सजा रखा है जो देखने में बहुत सुंदर है।

जिसपे व्हाइट चद्दर पड़ी हुई है और ऊपर छत में लाइटें लगी है।

और व्हाइट कलर हुआ है। इस रूम के अंदर पर्दे भी लगे हैं और ब्लैक गेट भी लगे हुए हैं।

यह एक माल है इस मॉल में जमीन पर एक छोटे बच्चे की कार खड़ी है।

और इस मॉल में दो लिफ्ट दिखाई दे रही है।

इनका कलर ब्लैक है बराबर में लिफ्ट के शीशे लगे हैं।

मॉल के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर लाइटें भी लगी हैं।

इन लोहे की फिटिंग के अंदर छोटे छोटे दवाई के बॉक्स रखे हुए हैं।

यह पर एक रोड है और कुछ दुकान दिखाई दे रही है।

यह कर्ण नर्सिंग होम है। इस कर्ण नर्सिंग होम की बिल्डिंग के ऊपर शीशे लगे हुए हैं।

ट्रेन चल रही है ट्रेन के बराबर में पटरी दिख रही है और उसकी ग्रिल भी दिख रही है।

यह एक रूम है इस रूम की दीवारों पर वाइट पेंट हुआ है।

ड्रम के पास में दो मजदूर खड़े हैं और यहां पर ईंटे भी पड़ी हैं।